ये पानी है जो उतर रहा है।

और ये ब्लू कलर का छत है आसमान भी ब्लू कलर का है।

और चेयर्स भी है लोग बैठे हुए हैं चेयर्स भी है ब्राउन कलर की वहां पे ।

ये एक सड़क है एक खाली मैदान है यहां पे कुछ छोटी-छोटी।

ग्रे ग्रे कलर का सब है पत्थर भी ग्रे कलर का है।

ये बहुत बड़ा नदी है और इसमें छोटे-छोटे प्लांट्स है ग्रीन कलर के दिख रहे हैंये सामने है इसको बहुत कलर के लेकिन ये जो एक तालाब है।

ग्रीन कलर के जो पेड़ है ये बहुत-बहुत बड़े हैं छोटे भी है और बड़े भी है यहां पे लोग जो है बहुत घूम रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं।

व पिंक कलर की साड़ी लगा के व्हाइट कलर की शर्ट लगा के ब्लू कलर की--

ये बहोत ही बड़ा जंगल है जंगल के बाहर जो है छत लगा हुआ है।

और लेफ्ट साइड से पेड़ है बहुत बड़ा पेड़ है और यहां से छत है।

इसमें ऊपर डिजाइन लगे हुए हैं पिलर्सज़ में और साइड में जो नीचे का पाथ है वो है ब्लू कलर का।

और साइड में वाइट बोर्ड है टी_वी लगा हुआ है कैमरा लगा हुआ है।

और साइड में ब्लू और वाइट कलर की चेयर्स है।

ऊं छोटे छोटे कर्टन्स लगे हुए हैं लोग बैठे हैं टेबल पे।

और उम्म नीचे फ्लोर ब्राउन कलर का है और जिम की--

यहां पे स्कूल है यहां पे प्रिंसिपल का ऑफिस लग रहा है।

सिल्वर कलर की बिल्डिंग है थोड़ी ब्राउनिश है थोड़ी येलो विश है।

सब्जियां बेच रहे हैं मार्केट में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं।

दुकान जो हैवो वाइट कलर का है ऊपर से खुला आसमान भी है ब्लू कलर का है।

और ऊपर वाला वॉल जो है वाइट कलर का है।

इसमें रेड कलर का फर्नीचर है ग्रीन कलर का फर्नीचर है ब्राउन कलर का फर्नीचर है।

और एक पिलर भी बीच में लगा हुआ हैऔर सीडी भी है उतरने के लिए--

वाइट और ब्लैक कलर से दीवार पे कलर किया गया--

उस साइड मैं जो हैं बोर्ड लगा हुआ हैं वहाँ पे वॉशिंग करते कॉल डिटेलिंग ऐंड पेंट --

अपने राइटिंग्स और वॉल्स को भी अच्छे से डेकोरेट किया गया है।

की बिल्डिंग पिंक कलर की हैऑरेंज कलर की भी है।

ये एक दुकान है बेकरी की दुकान जहां पर दाल भेज रहे हैं।

ये यहां पे एक म्यूसिशन दिख रहा है म्यूजिक चल रहा है।